हमें यह बाहरी रोड देखने को मिल रहा हैं यहाँ पे बहुत सारे लोथ थरे हैं ।

सामने में हमें एक नवनीत मोटर्स देखने को मिल रहा हैं जहाँ पे हमें एक फोर व्हीलर देखने को मिल रहा हैं।

साइड में बहुत सारे पत्थर देखने को मिल रहे हैं साइड में हमें एक पोल देखने को मिल रहा हैं।

उसके ऊपर एक एल_इ_डी रूम में लगा हुआ है उसके बाद एल_इ_डी लाइट लगा हुआ है फैन लगा हुआ है।

हमें यह एक अंदर का रूम का जीम का फोटो है जहाँ पे ऊपर में एक--

वहीं पे एक मोटरसाइकिल लगा हुआ है एक टेबल रखा हुआ है एक लाइट लगा हुआ है।

यहां पे हमें एक मोटरसाइकल देखने को मिल रहा है एक स्कूटी देखने को मिल रहा है।

साइड में एक लोहे का झूले टाइप देखने को मिल रहा हैं यहाँ पे झूला भी हमें देखने को मिल रहा हैं।

इधर हमें एक लैंप देखने को मिल रहा है एक पोल देखने को मिल रहा--

मैं यह एक डांसर बॉय का रूम देखने को मिल रहा हैं।

उधर हमें ये टावर देखने को मिल रहा हैं इस साइड हमें एक फोर व्हीलर देखने को बहुत सारे मिल रहे हैं।

उधर हमें रेट ट्रक देखने को मिल रहा हैं।

हमें यह एक बाजार का फोटो देखने को मिल रहा हैं जो हमें ठेला देखने को मिल रहा हैं।